यह एक जगह दिख रही है जहां एक पानी भर हुआ है नदी में और ऊपर कि तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए है नीचे --

नीचे घास है हरी और ऊपर पे पूरा जंगल है बड़े-बड़े पे --

ऊंची सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर से भी ट्रक निकल रहा है और एक निचे सड़क है उस पर से भी ट्रक निकल रहा है साइड में एक बड़ी बस खड़ी हुई है पीछे की तरफ कोहरा नजर आ रहा है।

यह एक जगह दिख रही है जहाँ पर पानी रखा हुआ है सामने की तरफ बहुत सारी लेडिजे है चार व्हाइट कलर की बसे खड़ी हुई है और सामने की तरफ पौधे लगे हुए है आसमान खाली दिख रहा है।

सामने की तरफ दीवार है दीवार में के ऊपर कुछ पेन बने हुए हैं नीचे एक साइड में घर है ऊपर की तरफ पेड़ लगे हुए हैं|